इसमें खिलौने बहोत सारे टंगे हुए हैं।

ये इस नदी में कई सारे लोग नहा रहे है।

इस चित्र में दो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं जो एक दुकान के पास खड़े हुए है।

मुझे इस चित्र में एक पंखा दिखाई दे रहा है।

और आजू बाजू कुछ पेड़ पौधे बने हुए है।

और इस ग्राउंड मे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है।

और झरने के नीचे कई सारे लोग दिखाई दे रहा है।

घर के आस पास कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस चित्र में नीले कलर का और पीले कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

और एक टेबल पे कई सारे ग्लास रखे हुए हैं।

ये एक चित्र मे फोन पे का स्कैनर दिख रहा है क्यू_आर कोड दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में ऊपर कई सारे लाइट लगा हुआ दिख रहा है।

ये चित्र में एक नीले कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है।

और मुझे एक चित्र में चप्पल भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में दो स्कूटी दिखाई दे रही है एक स्कूटी काले कलर का और एक स्कूटी सफेद कलर का।

और एक डब्बा नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

कब्रिस्तान के आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है।

और पीछे के साइड एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

और साइड मे दो एक बाइक और एक स्कूटी भी लगी हुई है।

इसके आगे एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

ग्राउंड के बाजू में एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

कान के बाहर एक तस्वीर में कई सारे केक की फोटो दिख रही है।

मुझे इस चित्र मे एक सफेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

बिल्डिंग के आसपास मुझे पेड़ भी दिख रहे है।

और एक गार्डन जैसा कुछ दिख रहा है।

हिरन का कान बड़ा और खड़ा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में दो इमारत दिख रही है और इमारत के सामने एक दो बाइक खड़ी हुई है।

कार भी खड़ी हुई है अलग अलग कलर के एक कार के ऊपर कवर भी लगा हुआ है।

मुझे इस चित्र में एक पौधे का दुकान दिख रहा है जिसका नाम ड्रीम नर्सरी है।

बोर्ड के सामने दो तीन स्कूटी खड़ी हुई है।